ऊपर बादल के नीचे झाड़ है झाड़ के बाजू में डॉक्टर ठहरे है तीन चार डॉक्टर ठहरे हुए है और बाजू में रोड यह पर --

यहाँ पर पानी है पानी के ऊपर बादल है ओर बाजो मे जड़ा होती हे | ओर मट्टी हे |

ऊपर बहुत बड़े झाड़ है ओर ऊपर बदल हे बदल के नीचे बहुत बड़े जड़ हे ओर बहडा है पीछे ओर जड सूखे हुए हे यह पर --

यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एस_एस_वी मोटर लिखे हुए हैं और यहाँ एक गार्डेन खड़े हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं और बने हुए हैं।

यह एक छोटा बंक है बक के बाहर एक सेट बना है और दीवाल है और बाजू में झाड़ा है. और एक कर तेरी हुई है | पीछे वायर है और लाइट है |

और फूलों के जैसे बनाकर रखें हैं बहुत सारे अंदर गिलास अंदर बनाकर रखे हैं बाहर कांच के गिलास जैसे बने हैं |इसमें से बहुत अच्छे दिख रहे हैं .